कुछ ए_सी भी लगी हुई है दीवार का रंग संतरे रंग से पेंट किया गया है।

नीचे बहुत सारे सफेद लाइट भी है।

सामने इंपीरियल लाइब्रेरी का लोगो है।

बाहर बहुत सारे मोटरसाइकिल और स्कूटी पार्क की गई है।

ग्राउंड पर बहुत सारे घास उग हुए हैं पीछे बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं।

खंबे पर बहुत सारे तार भी लटके हुए हैं पीछे एक बहुत बड़ा टावर--

यह एक विद्यालय की तस्वीर है जिसपर पीले रंग से रंगा गया है।

पीछे भी मैदान पर कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं।

सामने एक दुकान है जिसपर स्वाहनीस लिखा हुआ है।

बॉर्डर बनाया गया है यहां एक मोटर भी दिखाई दे रही है।

पीछे एक बैकग्राउंड है जिस पर छोटी छोटी कार बनाई गई है।

इसमें से एक है ब्ल्यू तो दूसरा वाइट और एक लाल भी है।

इसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगाये गए हैं पीछे आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।

खंबे के ऊपर बहुत ज्यादा तार लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं पीछे बहुत ज्यादा पेड़ भी लगाई गई है।

छोटे छोटे घास भी उगी हुई है और पीछे आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।

के सामने गमले पर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं यहां एक गार्ड भी नजर आ रही है।

ऊपर बहुत सारे सफेद लाइट भी रखी हुई हैं यहां बैठने के लिए कुर्सियां भी --